सामने यहाँ पे एक बहुत बड़ा जिम सेंटर दिख रहा हैं।

और ऊपर लिखा हुआ है सामने कैश काउंटर --

सामने यहाँ पर एक जिम सेंटर दिख रहा है बड़ा सा--